बहुत सारा सामान नजर आ रहा है।

यहां पर हमें फ्लावर्स के पौधे--

पेड़ नजर आ रे हैं।

जैसे बर्ड्स नजर आ रहे हैं।

देखने पर हमें ये कोई कैफे या रेस्टोरेंट में बैठा हो--

पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी चेयर्स नजर आ रही हैं यहां पर हमें--

चेयर्स नजर आ रही हैं।